में एक सड़क है आसपास बहुत बड़े पेड़ लगाए गए हैं.

एक ने पीली पेंट पहनी हुई है और एक ने ब्लैक पहनी हुई है.

जो कि गोल है और सामने बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं जो कि स्टील की है और छत पर पंखा भी लगा हुआ है.

सामने बिल्डिंग है और तीन शटर हैं और सामने नीले रंग की एक बिल्डिंग है.

बहुत बड़ी है उस पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कोरोना शॉप्स लिखा गया है रिटेल एंड होलसेल --

ये बहुत बड़ी शॉप है जो कि कपड़ों की है यहां पर कई महिलाएं आई हुई है.

सामने अलमारी है उसमें कपड़े रखे हैं और बहुत सारे बैठने के लिए स्टू स्टूल भी लगे हुए हैं.

और बहुत सारी दूर खाली मैदान भी है और ऊपर बहुत सारी घास लगी हुई है.

पर स्टील भी लगा हुआ है और उसके पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी हैं.

और तस्वीरें भी लगी हुई हैं और भारत का नक्शा का एक चित्र भी लगा हुआ है.

सामने खिड़की भी है एक काउंटर भी है और बाहर पौधे जाग रहे हैं.

डार्क की शेप में भी लाइटिंग है और कलर लाइटिंग भी है.

अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और यहां पर बहुत से छात्र हैं और बहुत ज्यादा--

बीच में खाली मैदान है और पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और मैदान में झंडा लगा हुआ है.

कईयों ने जैकेट पहनी हुई है कईयों ने कोट पहने हुए हैं.

चट्टान पर एक आदमी खड़ा है वह बोतल से पानी पी रहा है उसने आसमानी रंग की--

इसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है चेयर्स सफेद रंग की है.

और आगे की ओर बहुत लोग हैं पीछे चेयर्स खाली हैं.

उसमें कई दरवाजे हैं और सामने गाड़ी खड़ी है आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं पेड़ों के पत्ते हरे हैं.

सामने एक कांच का टेबल है उस पर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट की आकृति गोल है उसपर एक काटा और एक चम्मच रखा गया है.

गइयों के टैग लटक रहे हैं और जो कपड़े रखे गए हैं वो रेड येलो ग्रीन कलर के हैं.

यह एक क्लास रूम है इसकी बेंच लंबी है जो कि लकड़ी की है और सामने बहुत बड़ा सफेद बोर्ड लगा हुआ है.

छत पर सफेद रंग की है और उस पर लाइट लगी हुई है सामने का दरवाजा कांच का है खिड़कियां भी हैं.

जो कि ऊपर हटनुमा छत है यह टीन की शर्ट डली हुई है.

एक आदमी फर्नीचर बना रहा है यह एक फर्नीचर की शॉप है यहां पर चेयर्स पड़ी हुई हैं.

और सोफे भी पड़े हुए हैं एक चेयर पर वाइट कलर का--

और शीट बनी हुई है इस आदमी ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है.

यह एक बहुत सुंदर सिंहासन है जो कि चांदी जैसा लग रहा है इसके अंदर लाल रंग के--

पैक बनाई गई है उसके पीछे गोल्डन दीवार है और उस पर कार्विंग की गई है बीच में जाली टाइप बनाया गया है.

सामने बहुत बड़ी शॉप है उस पर सुपर मेगा मार्ट रजिस्टर का बोर्ड लगा है सामने एक गाड़ी भी खड़ी हुई है.

बिजली की तारे भी जा रही है और बाहर वाइट कलर का फर्श है.

फोटो चल रहे हैं और एक आदमी स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ है पीछे एक बाइक पर एक आदमी बैठा है.

और साइड में दो आदमी खड़े हैं बाहर बिजली का पोल भी जा रहा है जिस पर तार टपेट लपेट के लगाई गई है.

के सामने स्कूटी भी खड़ी है बाइक भी खड़ी है और अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ है.

बाहर से वाशिंग मशीन दिख रही है जो कि मैरून नीले और जामनी ग्रे कलर की है.

और छत पर दो पंखे लगे हैं और एल_ई_डी लाइट भी लगी हुई है छत सफेद रंग की है.

यह एक स्कूल का गेट है जो कि हरे रंग का है इस पर एल_डी_एस_एस प्लाज्मा स्कूल लिखा है.

मार्केट का सीन है वहां बड़ा बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का उस पर वाइट कलर से होटल लिखा हुआ है.

के सामने बराबर में एक दुकान है दुकान के सामने एक आदमी जा रहा है.

जिसने सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनी है और उसके सामने बाइक स्कूटी भी खड़ी हैं.

टायर्स का परिचय सामने दुकान है उस दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है एम_आर_एफ लिखा हुआ है.

और उसके अंदर छत पर लाइटिंग चमक रही है आसपास पेड़ पौधे भी है एक और शॉप है जो पीले रंग की दीवार है.

पर्दे सीधे टंगे हुए हैं जिसमें हरे नीले पीले लाल पर्दे लग रहे हैं.

उस लड़के ने काली टी-शर्ट मेरून पैंट पहनी हुई है.

यह शादी का हॉल है बीच में कारपेट बिछा हुआ है और आसपास चेयर्स टेबल्स लगी हुई हैं.

जिन पर क्लोथ सजाए गए हैं छत पर फानुस लटक रहे हैं.

दीवारों पर कार्विंग की हुई है और दीवारों में कई दरवाजे भी हैं.

तो किसी कार्ड पर छतरी बनी हुई है और किसी कार्ड पर हाथी बने हुए हैं।

और बराबर में कुछ डिब्बे भी रखे गए हैं जो कि लाल नीले पीले हैं.